ये जगह का नजारा ही सुंदर है।

के ऊपर दिल के चॉकलेट बना के सजा दिए गए हैं। यह केक काफी बड़ा है। यह केक --

म लोग जन्मदिन पर लेकर जाते हैं काटते हैं यह केक |

यह बिल्डिंगो में अनेक प्रकार के दुकान है यह दुकान में सामान रखे जाते हैं।